लोहे के खंभे वम्भे गढ़े हुए दिखाई दे रहे है इधर वायरिंग रायरिंग फैली हुई दिखाई दे रही है।

फैमिली को एक फैक्ट्री बनी दिखाई दे जीस फैक्ट्री --

जाते हुए दिखाई दे रहा और जो कि इधर कार खड़ी दिखाई दे रही है सामने।

पर पानी के साथ मुझे लग चुका है सामने की ओर नीला आसमान दिखाई दे रहा है बादल वादल बने हुए दिखाई दे रहे सामने की तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगाए हुए सामने।

हेलमेट सामने को एक इंसान खडा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो के सामने हार्डवेयर ह--

और दिन का समय दिखाई दे नीला आसमान दिखाई दे रहा

पेड़ पौधे हरी घास फूस लगाई गई सामने--

सामने छोटे बॉक्स हैं और सफेद दिखाई दे रहे हैं।

रात का समय दिखाई दे रहा है नीचे की ओर कितने इंसान घूमते भागते दिखाई--

को कैसे घर बने दिखाई दे जो बच्चों को साम--

व्हाइट कलर की लाइटिंग व्हाइट व्हाईट कलर की लाइटिंग जलती हुई दिखाई दिन का समय दिखाई दे है केंचुए-वेंचुए टाइप के यहां पर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की पन्नी में।

सामने की ओर इधर चीज रखी दिखाई दे रही हैं ।

एक बेहती हुई दिखाई दे रही है जो--

व्हाइट कलर कि लाइटिंग वाईटिंग जलते हुए दिखाई दे रही है टाइल्स लगाई गई स्टूल उस्तूल--

ताजा है कि फूल टाइप के डिजाइन बनाई गई हैं दीवाल है दीवाल पे बैठ के फोटो के सामने की ओर--

एक चीज है तरह तरह की चीजे रखी हुई दिखाई--

सामने की ओर क्यू दिखाई दे रही है।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दिन का समय दिखाइ दे सामने--

इधर झरने वारने बनाए गए है झरने नीचे पानी गिर रहा है।

सामने जो की साइकिलें लिए बनाए गए अजीब अजीब--

पिले कलर की लाइटिंग लगाइ गई है नीचे की और हरी भरी घास फुस लगी दिखाई दे रही--